ये एक खंडर जेसे दिखाई दे रहा है इसके ऊपर गुम्बज बने हुए है ये एक पीले कलर का नजर आ रहा है।

ये एक कॉलोनी नज़र आ रही है जिसमे गाड़िया बहार खड़ी है घर है बहुत सारे लाइटे जल रही है।